और इसमें सभी मिठाई बारीकी ढंग से सजाई गई हैं।

दरवाजे के बाहर एक फोर व्हीलर खड़ा है उस फर्श में एक बाइक भी है और बगल में भी ढेर--

बहुत बड़ा बिल्डिंग है इसमें के_के नर्सिंग होम है और आगे एक खूबसूरत गेट है इसमें एक व्यक्ति साइकिल लेकर--

और इसमें हर कलर का लाल पीला--

जो कि बिजली व्य व्यय का व्यवस्था है और इसमें एक है टीचर जो कि बच्चों।

टी_वी सब सामग्री रखा हुआ है और इसके सामने फर्श में एक व्यक्ति का भी व्यवस्था--